एक फोर व्हीलर गाड़ी दिखाई दे रही है दो आदमी खड़े हुए हैं।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है।

इसमें लोहे की जाली लगी हुई है।